इस तस्वीर में यह कोई एक दुकान है रखे हैं।

और ये कुछ गीटे पेड़ अलग अलग प्रकार के समान पड़ा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में यह एक कोई होटल है इस होटल के बाहर --

बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हैं कुछ मोटरसाइकिले खड़ी हैं इस होटल में ये रंग बिरंगी लाइटें जल रही हैं।

केन्द्र है इस केंद्र के बाहर ये कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी हैं एक गाड़ी खड़ी नजर आ रही है इस तस्वीर में --